चित्र में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के ऊपर सफ़ेद परदे दिखाय दे रहे है।

इस चित्र में एक गाड़ी दिख रही है। तीन बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं। दो औरतें आती हुई दिख रही हैं।